येलो कलर की टी_शर्ट डाली शर्ट डाली हुई है और साथ में ब्लू कलर की पैन्ट डाली हुई है कुछ बच्चे यहां लाइन लगाकर खड़े हुए--

यहां पे एक सामने शॉप नजर आ रही है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ कुछ गाड़ियां खड़े हुए दिखाई दे रही हैं।

कुछ झूले दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ साफ आसमान दिखाई दे रहे हैं।